यहाँ पर एक चूले के ऊपर एक बड़ी सी कड़ाई दिखाई दे रही है तथा यहाँ एक बहुत ही बड़ासा पराद रखा हुआ है यहाँ पे लोग कुछ बना रहे है।

यहाँ ज्यादा तर चटाने ही चटाने देखने को मिल रही है तथा यहाँ पर छोटे छोटे पेड़ भी देखने को मिल रहे है।

गाड़ी की फ़ोटो चिपकी हुई है तथा यहाँ दिवार पे भी गाड़ी की फ़ोटो चिपकी है।

जैसे की में देख पा रही हु यहा बड़े बड़े घर दिखाई दे रहे है यहा पर घरों के ऊपर लड़ियाँ लगी हुई दिखाई दे रही है।

यहाँ पर नृत्य की प्रस्तुति कर रहे है सभी बच्चीवो ने साड़ी पेहन रखी है और बच्चों ने कुरता पजामा पेहना हुआ है।